इस फोटो में खाली ग्राउंड है।

एक बेसिन बाल्टी और वॉशरूम में जिसके वॉल पे बैनर चिपकाया हुआ है।

इन पत्थरों के साइड साइड में बहोत सारे बालू और रोकड़ी है।

इसके साइड ही में बहुत सारे घास और पेड़ सुख गए हैं।

मस्जिद के साइड में एक बड़ी सी बॉउंड्री की गई है जो ईंट से है।

इसके सामने से दो तार गुजरे हुए हैं।

दुकान के राइट साइड में बहुत सारे गमले के प्लांट लगे हुए है।

सीढियो के वाल का कलर व्हाइट और रेड है।

इसके साइड साइड में टावर बनी हुई है।

इस फोटो में तीन चेयर और एक टेबल रखा हुआ है।

उसके साइड में एक कार है इस कार का कलर ब्लैक कलर का है।

इस फोटो में एक चर्च है चर्च में बहुत सारे लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारी बाइक और स्कूटी पार्क की गई है।

इसके वॉल का कलर वाइट कलर का है इसके पीछे एक बैनर लगा हुआ है।

ये फोटो एक दुकान की है इस दुकान के बाहर बैनर व पोस्टर लगे हुए हैं।

साइड ही में एक ड्रेसिंग है जिसमें बड़ी सी मिरर लगी हुई है।

इसके सीलिंग पर लाइट्स लगी हुई है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे सोफे और टेबल और चेयर रखी हुई है।

इसके साइड साइड में लाइट्स लगी हुई है।

वॉल पे ग्लासेस लगी हुई है और एक बैनर है।

राइट हैंड में बहुत सारे सामान इंजेक्शन ये सब रखा हुआ है और दो पेशेंट है।

इस पहाड़ के साइड में एक बड़ी सी झरना है।

उस जगह बहुत सारी कार वैन और बाइक पार्क है।

इस फोटो में एक दुकान है इस दुकान के ऊपर बहोत सारे पोस्टर पेपर चिपकाए गए हैं।